यहाँ पे मार्केट है। तीन आदमी मछली बेच रहे हैं तीनों मछली काट रहे हैं।

यहाँ पे दो आदमी मछली बेच रहें हैं।

यहाँ पे स्टेट बैंक ए.टी.एम. है।

खिड़की में लेस्ट लगा हुआ है।